खूब सारे अ एक कुछ अ लेडीस खड़े हुए हैं और अल ए आलू आलू कुछ आलू देख रहे हैं।

उनके अगल-बगल कुछ पेड़ पौधे हैं जिसमें हरे कलर का पेड़-पौधा हैं।

एक सैलून में एक लड़का उस बाल काट रहा हैं और एक लड़का बगल में उसके बैठा हुआ हैं और कुछ शीशे भी रखे हुए हैं।

सुंदर सी गार्डन है गार्डन में आ कुछ घास जमे हुए है हरे कलर का--

उनके बाहर कुछ आदमी लोग खड़े हुए है कुछ लोग कुछ लोग देख रहे है और एक लड़का--

टेंट लगी हुई है जो बाहर से फूलो से सजा हुआ है और दो आदमी अ एक फोन मे बात कर रहा है एक आदमी--

और ऊपर रेड कलर का दी दीवाल बना हुआ है कुछ पाइपिग भी हैं ।

एक सिटी कैफे है सीटी कैफे में एक मे उसके बाहर चेयर लगी हुई है और वही पास छः सात लड़के खड़े हुए है जो फोटो खींचबा रहे है।

एक पुल है पुल मे पुल के ऊपर हरा-भरा पेड़ है ए और मे एक मैदान है जिसमे हरे कलर का घास जमा हुआ है और लड़का एक--

के किताब कॉपी का ए दुकान है दुकान के बाहर एक आदमी ई खड़ा हुआ है और एक ए बुक दिखा रहा है।

एक बैंक है बैंक के बाहर ठेला लगा हुआ है कोई आदमी रिक्शा चला रहा है कोई--

कोई आदमी साइकल चला रहा है कोई ग गाड़ी खड़ी हुई है और कुछ फल-फूल बेच रहे--